साइड में एक टू व्हीलर जाती हुई नजर आ रही है राइट साइड में एक आदमी खड़ा हुआ है और ब्लू और --

बहुत सारे लोग यहाँ पर आते-जाते नज़र आ रहें हैं और कुछ लोग खड़े हुए हैं।

राइट साइड में ड्रॉवर कुछ खाली है जहाँ पर बुक रख सकते हैं।

नीचे ब्लैक कलर का फर्श किया गया है इधर दो वाइट कलर के पिलर दिखाई दे रहे हैं।

नीचे एक ग्रीन कलर की मैट डाली गई है।

इस बिल्डिंग के पीछे एक बहुत ही बड़ा हरा पेड़ है लगा हुआ है।

ये एक जनरल स्टोर है यहाँ पर काफी सारी सामान रखे गए है जैसे की खाने की राशन रखा गया है चॉकलेट रखी गई है।

और इस काउंटर के ऊपर भी कुछ मिष्ठान रखे गए हुए है जो कि पैक्ड है।

इस रूट पर एक फोर व्हीलर भी जाती हुई नजर आ रही है।

यहाँ पर एक गैरेज है।

लेफ्ट साइड में एक रोड है रोड के किनारे में ही वाइट कलर का एक अ बहोत बड़ा घर बनाया गया है।

राइट साइड में एक दो ऑटो आते-जाते नजर आ रहें हैं।